यहां एक बारात के माहौल में दूल्हा दुल्हन--

यहाँ एक पार्किंग में काफी सारी मोटरसाइकिल खड़ी हैं और एक कोने में एक कमरा बना हुआ है।

एक प्लेट एक गिलास एवं एक मसाला और टिशू पेपर --

यहाँ पर एक कार्यालय में कुछ महिलाएं एवं कुछ पुरुष एक पंक्ति में खड़े हैं।

और उसने नीले रंग की शेरवानी पहन रखी है इन चारों के पीछे फूलों की सजावट है।